हरी सब्जियां हैं आलू हैं।

और छत के ऊपर चढ़े हुए हैं और छत बन रही है।

रंगीन लाइटें लगी हुई हैं हरी गुलाबी--

बिल्डिंग के ऊपर केंद्रीय भंडारण निगम--

और उसके हाथ में कोई मशीन है।

उसने चेहरे पर मास्क लगाया हैं और सफेद कैप पेहनी है।

ऑटो और सफेद गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

बहुत भीड़ दिखाई दे रही है लोग है।

लाइटों से सजा हुआ वो दिखाई दे रहा है।

और हमें पत्थर के बीच में दिखाई दे रहा है वो--

जो पीले लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है।

आदमी बैठे हुए हैं और कुर्सियों पर बच्चे बैठे हैं।

स्टेज पर हमें दिखाई दे रहे हैं सब--

बहुत सारे फूल लगे हुए हैं फूलों की सजावट की गई है।

हमें ब गाड़ियां दिखाई दे रही हैं दो कारें हैं।

हमें तस्वीर के अंदर निर्माण सदन का--

तस्वीर के अंदर हमें हरे-हरे पेड़--

तस्वीर में हमें दो लड़के दिखाई दे रहे हैं दोनों के चेहरे--

पानी का एक मटका और उसके ऊपर एक गिलास रखा है।

दूर बने हुए हमें हरे-हरे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

लाल रंग का एक टेबल दिख रहा है गोल--

हमें तस्वीर के अंदर एक खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दे रही है।

एक अच्छा खूबसूरत सा गेट बना है इसका--

और उस पर बहुत सारा सामान क्राफ्ट का दिखाई दे रहा है।

हमे एक महिला दिखाई दे रही हैं सफेद कपड़ों में खड़ी हैं।

हमें तस्वीर के अंदर सफेद टाइल्स जमीन पर लगे दिखाई दे रहे हैं।

और हमें दूर भी लोग बैठे हुए कुर्सी पर नजर आ रहे हैं।